नमस्कार दोस्तों loading data from files पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython कंसोल पर बुनियादी python कमांड्स कैसे चलाएं
यदि नहीं संबंधित पाइथन ट्यूटोरियल्स के लिए
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें अब टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab पैकेज आरंभ करते हैं
primestxt फाइल को पढ़ने के साथ शुरू करते हैं इस फ़ाइल में एक कॉलम में सूचीबद्ध अभाज्य संख्याओं की सूची है
टाइप करें catspaceprimesdottxt
हम फाइल से डेटा फैच करने के लिए cat कमांड उपयोग कर सकते हैं और इसे टर्मिनल पर प्रदर्शित कर सकते हैं एंटर दबाएं
हम देखते हैं अभाज्य संखाएं टर्मिनल पर प्रदर्शित होती हैं
अब हम primes वेरिएबल में इस डेटा को संचित करने के लिए loadtxt कमांड का उपयोग कर सकते हैं
अतः टाइप करें primesequal toloadtxtwithin parentheseswithin double quotesprimesdottxt और एंटर दबाएं
कृपया सुनिश्चित करें कि आप primestxt फाइल के लिए सही पाथ प्रदान कर रहे हैं
हमारे मामले में फाइल home फोल्डर में मौजूद है
primes अब अभाज्य संख्याओं का क्रम है जो primestxt फाइल में सूचीबद्ध था
अब वेरिएबल primes में कंटेंट प्रदर्शित करते हैं
अतः टाइप करें print parentheses में primes और एंटर दबाएं हम देखते हैं क्रम छपा हुआ है
हमने देखा कि सभी period के साथ समाप्त होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी संख्याएं floats हैं
अब टाइप करें catspacependulumdottxt और एंटर दबाएं
इस फाइल में डेटा के दो कॉलम्स हैं पहले कॉलम में pendulum की लंबाई है दूसरे कॉलम में समरूपी time period है
अब loadtxt कमांड का उपयोग करके pend वेरिएबल में फाइल से डेटा रीड करें
अतः टाइप करें pendequal toloadtxtparentheses में double quotes मेंpendulumdottxt और एंटर दबाएं
कृपया ध्यान दें कि रोज़ की समान संख्या के लिए loadtxt को फाइल के दोनों कॉलम्स की आवश्यकता होती है
अब pend वेरिएबल को प्रिंट करते हैं यह देखने के लिए कि इसमें क्या है
ध्यान दें कि वेरिएबल में डेटा फ़ाइल के दो कॉलम्स वाले दो क्रम होते हैं
दो पृथक क्रमों में डेटा को रीड करने के लिए loadtxt कमांड के अतिरिक्त आर्ग्युमेंट का उयोग करते हैं
टाइप करें lcommatequal toloadtxtparentheses में double quotes मेंpendulumdottxtafter double quotes commaunpackequal totrue और एंटर दबाएं
अब यह देखने के लिए कि उनमें क्या है वेरिएबल l और t प्रिंट करते हैं
टाइप करें printparentheses मेंl और एंटर दबाएं
ध्यान दें कि l और t में अब क्रमशः pendulumtxt से डेटा का पहला और दूसरा कॉलम्स है
unpackequal totrue ने दो पृथक और साधारण क्रम में दो कॉलम्स बनाए हैं
यहाँ विडियो रोकें और निम्न अध्याय को हल करने का प्रयास करें और पुनः विडियो चलाएं
pendulumunderscoresemicolondottxt फाइल से डेटा रीड करें
यह फाइल दो कॉलम्स में डेटा रखती है ये कॉलम्स सेमीकॉलन्स द्वारा पृथक हैं ऐसा कैसे करें यह देखने के लिए ipythonहेल्प का उपयोग करें
हल देखते हैं टर्मिनल पर जाएं
पहले हम फाइल का कंटेंट देखेंगे
अतः टाइप करें cat space pendulumunderscoresemicolondottxt एंटर दबाएंहम सेमीकॉलन द्वारा पृथक दो कॉलम्स देखते हैं
अतः टाइप करें lcommatequal toloadtxt parentheses में double quotes में pendulumunderscoresemicolon dottxtdouble quotes comma के बाद unpackequal totruecommadelimiterequal todouble quotes मेंsemicolon और एंटर दबाएं
अब printparentheses मेंl और एंटर दबाएं
यंह l और t दो वेरिएबल्स में कंटेंट्स प्रदर्शित करता है
this brings us to the end of this tutorial in this tutorial we have learnt:
डेटा स्पेसेस या अन्य डीलीमीटर्स द्वारा पृथक सिंगल कॉलम फॉर्मेट या मल्टिपल कॉलम फॉर्मेट में हो सकता है
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
कॉलन द्वारा पृथक डेटा के तीन कॉलम्स के साथ फाइल datatxt दी गई है 3 पृथक सामान्य क्रम में इसे रीड करें
अब उत्तर देखें पहले प्रश्न का उत्तर असत्य है
loadtxt कमांड सिंगल कॉलम्स साथ ही साथ मल्टिपल कॉलम्स वाली फाइल्स से डेटा रीड कर सकता है
दूसरे प्रश्न का उत्तर है डेटा को तीन कॉलम्स में पृथक करने के लिए हम loadtxt कमांड निम्नानुसार उपयोग करते हैं
xequal toloadtxtparentheses में और double quotes मेंdatadottxtdouble quotes comma के बाद unpackequal totrue
अतः xequal toloadtxt parentheses में double quotes मेंdatadottxtdouble quotes comma के बादunpackequal totruecommadelimiterequal to double quotes मेंcolon
क्या इस स्पोकन ट्यूटोरियल पर आपके पास प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
क्या python में आपके पास कोई सामान्य/तकनीकी प्रश्न है कृपया लिंक पर दिए गए फोरम पर जाएं
fossee टीम लोकप्रिय पुस्तकों के कई हल किए गए उदाहरणों की कोडिंग का संयोजन करती है
हम ऐसा करने वालों को मानदेय और प्रमाण पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद